जहा दिखाई दे रही यहाँ पे बहुत अँधेरा दिखाई दे रहा है ग्रीन और ब्लैक कलर के गमले दिखाई दे रहे हैं सूरज दिखाई दे रहा है यहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे परपल -

दिखाई दे रहे है और बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है । बस पे जामनी कलर दिखाई दे रहा है। रेड कलर दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर यहा पे एक बस खड़ी हुई है जो की पूरी ब्लैक दिखाई दे रही--